मोज़िला थंडरबर्ड के परिचय पर स्पोकन ट्यूटोरियल में आपका स्वागत है
इस ट्यूटोरियल में हम मोज़िला थंडरबर्ड के बारें में सीखेंगे और
थंडरबर्ड डाउनलोड संस्थापित करें और लॉन्च कैसे करें
आप यह भी सीखेंगे कि कैसे160 नया इमेल अकाऊंट कान्फिगर करेंडाऊनलोड करें और मैसेज पढ़ें
लिखें और मैसेज भेजेंथंडरबर्ड को लॉग आऊट करें
मोज़िला थंडरबर्ड एक सरल ईमेल क्लाईंट है
यह एक बड़ा प्लेटफॉर्म सॉफ्टवेयर है जिसका अर्थ है कि यह विभिन्न आपरेटिंग सिस्टम पर कार्य कर सकता है
यह आपको ईमेल मैसेसेज डाऊनलोड करने की इजाज़त देता है
आपके दूसरे मेल अकाऊंट से आपके स्थानीय कंप्यूटर में
यह आपके विभिन्न ईमेल अकाऊंट्स का प्रबंधन करता है
थंडरबर्ड में कुछ उन्नत सुविधाएँ भी हैं
आप जीमेल याहू और यूडोरा जैसे अन्य मेल अकाऊंट्स से अपने सभी ईमेल डेटा ले सकते हो जैसे मेल फ़ोल्डर और एड्रेस बुक
अगर आप पॉप3 का इस्तेमाल करते हो तो आप थंडरबर्ड के सिंगल इनबॉक्स में पॉप3 अकाऊंट एकत्रित कर सकते हो
विशेषताओं द्वारा आप मैसेज समूहीकृत कर सकते हैं जैसे डेट senderप्रायोरिटी या कस्टम लाबेल
यहाँ हम उबंटू लिनक्स 1204 पर मोज़िला थंडरबर्ड का उपयोग कर रहे हैं
अगर आपके कंप्यूटर में मोज़िला थंडरबर्ड संस्थापित नहीं है आप उबंटू सॉफ्टवेयर सेंटर का उपयोग करके इसे संस्थापित कर सकते हैं
उबंटू साफ्टवेयर सेंटर पर अधिक जानकारी के लिए कृपया इस वेबसाइट पर जाएँ
आप मोज़िला वेबसाईट से भी थंडरबर्ड डाऊनलोड और संस्थापित कर सकते हैं
मोज़िला थंडरबर्ड माइक्रोसॉफ्ट विंडोज 2000 या नवीतम वर्ज़न जैसे एमएस विंडोज एक्सपी या एमएस विंडोज 7 के लिए भी उपलब्ध है इस बारे में अधिक जानकारी के लिए कृपया मोजिला वेबसाइट पर जाएँ
मोज़िला थंडरबर्ड के इस्तेमाल के लिए आपके पास कम से कम दो वैध ईमेल पते होने चाहिए
आप यह भी सुनिश्चित कर लें कि ईमेल अकाऊंट में पॉप3 आप्शन सक्षम है
और आपको यह सुनिश्चित करना होगा कि आप इंटरनेट से जुड़े हुए हैं
थंडरबर्ड को लॉन्च करें
पहले दश होम पर क्लिक करें जो आपके कंप्यूटर के डेस्कटॉप के बाएँ कोने के उपर में एक गोल बटन है
सर्च बॉक्स प्रदर्शित होता है
अब थंडरबर्ड टाइप करें
थंडरबर्ड आइकन प्रदर्शित होता है
एप्लिकेशन खोलने के लिए उस पर क्लिक करें
मैल अकाउंट सेटअप डायलॉग बॉक्स खुलता है
ऊपर बाएँ पर रेड क्रॉस बटन पर क्लिक करके इसे बंद करें
मोज़िला थंडरबर्ड एप्लिकेशन खुलता है
पहले मोज़िला थंडरबर्ड इंटरफ़ेस के साथ खुद को परिचित करें
मोज़िला थंडरबर्ड इंटरफ़ेस में विभिन्न आप्शन्स के साथ मुख्य मेन्यू है
मेन्यू बार पर मुख्य मेन्यू के नीचे शॉर्टकट आइकन्स उपलब्ध हैं
उदाहरण के तौर पर यहाँ गेट मैल राइट और एड्रेस बुक के लिए शॉर्टकट आइकन्स हैं
थंडरबर्ड दो पैनलों में विभाजित है
बायाँ पैनल आपके थंडरबर्ड अकाऊंट में फ़ोल्डर्स को प्रदर्शित करता है जैसा कि अभी तक हमने मेल अकाऊंट कॉन्फ़िगर नहीं किया है यह पैनल अभी कोई भी फ़ोल्डर्स नहीं प्रदर्शित करेगा
दाएँ पैनल पर इमेल अकाउंट्स के लिए एडवांस्ड फीचर्स और बहुत कुछ ऑप्सन्स हैं
इस ट्यूटोरियल के प्रयोजन के लिए हमने पहले से ही दो ईमेल अकाऊंट्स बनाएँ हैं
वे है STUSERONEgmailcom STUSERTWOyahooin हमारा सुझाव है कि आप अपने दोनों ईमेल अकाउंट्स का उपयोग करें
मैंने इन दोनों मेल खातों में पॉप3 विकल्प भी सक्षम किया है
मैंने जीमेल में पॉप3 कैसे सक्षम किया
सबसे पहले जीमेल अकाऊंट में लॉगिन करें
एक नया ब्राउज़र खोलें और एड्रेस बार पर wwwgmailcom टाइप करें
अब युज़र नेम STUSERONE gmailकॉम और फिर पासवर्ड प्रविष्ट करें
जीमेल विंडो के दाएँ शीर्ष पर सेटिंग्स आइकन पर क्लिक करें
सेटिंग्स ऑप्शन पर क्लिक करें
सेटिंग्स विंडो प्रदर्शित होती है
फॉरवर्डिंग और popइमाप टैब पर क्लिक करें
पॉप डाउनलोड में मैंने सभी मेल्स के लिए इनेबल पॉप चुना है
फिर सेव चेंजों पर क्लिक करें
जीमेल मेल विंडो प्रदर्शित होती है
अब पॉप3 जीमेल में सक्षम है
जीमेल लॉग आऊट करें और इस ब्राउज़र को बंद करें
थंडरबर्ड में STUSERONE gmailकॉम अकाऊंट कॉन्फ़िगर करें
थंडरबर्ड द्वारा जीमेल अकाऊंट्स स्वतः कॉन्फ़िगर किए गये हैं
अगले ट्यूटोरियल में हम अन्य ईमेल अकाऊंट्स के लिए मैनुअल कॉन्फ़िगर्स के बारे में सीखेंगे सबसे पहले सुनिश्चित करें कि आपका नेटवर्क कनेक्शन ठीक से कॉन्फ़िगर्ड है
मुख्य मेन्यू से एडिट और प्रेफरेंस चुनें
थंडरबर्ड प्रेफरेंस डायलॉग बॉक्स प्रदर्शित होता है
एडवांस्ड पर क्लिक करें नेटवर्क और डिस्कस्पेस टैब चुनें और सेटिंग्स पर क्लिक करें
कनेक्शन सेटिंग्स डायलॉग बॉक्स में उसे सिस्टम प्रॉक्सी सेटिंग्स आप्शन चुनें
ओक पर क्लिक करें
क्लोज क्लिक करें
अब अकाऊंट आप्शन का उपयोग करके एक नया अकाऊंट बनाएँ
थंडरबर्ड के दाएँ पैनल में अकाऊंट के नीचे क्रिएट आ न्यू अकाउंट पर क्लिक करें
मेल अकाऊंट सेटअप डायलॉग बॉक्स प्रदर्शित होता है
स्टूसरोन के रूप में नाम एन्टर करें
STUSERONEgmailcom के रूप में ईमेल पता एन्टर करें और अंत में जीमेल अकाऊंट का पासवर्ड एन्टर करें
आगे कंटीन्यू पर क्लिक करें
कॉन्फिगरेशन फाउंड इन मोजिल्ला आईएसपी डेटाबेस मैसेज प्रदर्शित होता है
आगे पॉप3 चुनें
कभी एक एरर मेसेज थंडरबर्ड फेल्ड टो फाइंड थे सेटिंग्स प्रदर्शित हो सकता है
यह दर्शाता है कि थंडरबर्ड जीमेल सेटिंग्स स्वचालित रूप से कॉन्फ़िगर करने में सक्षम नहीं था
ऐसे मामले में आपको मैन्युअली सेटिंग्स कॉन्फ़िगर करनी होगी
अब मैनुअल कॉन्फिग बटन पर क्लिक करें
जीमेल के लिए कॉन्फ़िगर सेटिंग्स प्रदर्शित होती हैं
जैसे कि थंडरबर्ड पहले से ही जीमेल सेटिंग्स सही ढंग से कॉन्फ़िगर कर चुका है हम उन्हें नहीं बदलेंगे
इस वीडियो को रोकें और इन सेटिंग्स का एक नोट बनाएँ
जीमेल को मैन्युअली कॉन्फ़िगर करने के लिए आपको संबंधित फील्ड में इन सेटिंग्स को दर्ज़ करना होगा
जब सेटिंग्स मैन्युअल रूप से कॉन्फ़िगर होती हैं क्रिएट अकाउंट बटन सक्षम होता है
इस ट्यूटोरियल में थंडरबर्ड में जीमेल सही ढंग से कॉन्फ़िगर है
तो क्रिएट अकाउंट पर क्लिक करें
आपके इंटरनेट की गति के आधार पर इसके लिए कुछ मिनट्स लग सकते हैं
जीमेल अकाऊंट बन गया है और दाएँ पैनल पर प्रदर्शित होता है
ध्यान दें कि अब बायाँ पैनल ईमेल आईडी स्टूसरोन gmailकॉम प्रदर्शित करता है
इस जीमेल अकाऊंट के नीचे विभिन्न मेल फोल्डर्स प्रदर्शित होते हैं
अब बाएँ पैनल से जीमेल अकाऊंट के नीचे इनबॉक्स पर क्लिक करें
गेट मैल आइकन पर क्लिक करें
थंडरबर्ड विंडो के नीचे स्टेटस बार पर ध्यान दें
यह डाउनलोड किए हुए संदेशों की संख्या प्रदर्शित करता है
जीमेल अकाऊंट स्टूसरोन gmailकॉम के सारे ईमेल मैसेज अब इनबॉक्स में डाऊनलोड हो चुके हैं
इनबॉक्स पर क्लिक करें और मैसेज चुनें
मैसेज नीचे पैनल में प्रदर्शित होता है
मैसेज पर दो बार क्लिक करें
यह एक नए टैब में खुलता है
टैब के ऊपरी दाएँ में एक्स आइकन पर क्लिक करके इस टैब को बंद करें
एक मैसेज लिखें और उसे STUSERTWO yahooइन अकाऊंट पर भेजें
मेल टूल बार से राइट पर क्लिक करें
राइट डायलॉग बॉक्स प्रदर्शित होता है
फ्रॉम फील्ड आपका नाम और जीमेल आईडी प्रदर्शित करता है
टो फील्ड में STUSERTWOyahoo इन एन्टर करें
मेल में टेक्स्ट ही आई नोव हेव एएन इमेल अकाउंट इन Thunderbird
टाइप करें
अब टेक्स्ट चुनें और फॉन्ट का आकार बढ़ाएँ
अब लार्जर फोंट साइज आइकन पर क्लिक करें
यह फॉन्ट का आकार बढ़ाता है
टेक्स्ट का रंग बदलने के लिए पहले उसे चुनें और चूसे कलर फोर टेक्स्ट आइकन पर क्लिक करें
टेक्स्ट कलर डायलॉग बॉक्स प्रदर्शित होता है
रेड पर क्लिक करें और ओक पर क्लिक करें
टेक्स्ट का रंग बदल गया है
अब स्माइली डालें160
इंसर्ट आ स्माइली फेस आइकन पर क्लिक करें
स्माइली सूची से स्माइल पर क्लिक करें
स्माइली प्रविष्ट होता है
आप आपके मेल पर स्पेल चेक भी कर सकते हैं
हेव की स्पेलिंग हेवे में बदलते हैं
स्पेलिंग पर क्लिक करें और इंग्लिश यूएस चुनें
चेक स्पेलिंग डायलॉग बॉक्स प्रदर्शित होता है जो गलत वर्तनी शब्द चिन्हांकित करता है
यह सही वर्तनी को भी प्रदर्शित करता है
रिप्लेस पर क्लिक करें
बाहर निकलने के लिए क्लोज पर क्लिक करें
मुख्य मेन्यू से वर्तनी वरीयताओं को सेट करने के लिए एडिट और प्रेफरेंस पर क्लिक करें
प्रिफरेन्सेस डायलॉग बॉक्स में कंपोजिशन पर क्लिक करें
बाद में आपकी जरूरतों के अनुसार आप विकल्पों की जाँच कर सकते हैं
क्लोज पर क्लिक करें
अब मेल भेजने के लिए सिर्फ़ सेंड बटन पर क्लिक करें
सब्जेक्ट रिमाइंडर डायलॉग बॉक्स प्रदर्शित होता है
क्योंकि हमने इस मेल के लिए विषय प्रविष्ट नहीं किया था
बिना विषयसब्जेक्ट के मेल भेजने के लिए आप सेंड विथआउट सब्जेक्ट पर क्लिक कर सकते हैं
कैंसेल सेंडिंग पर क्लिक करें
अब सबजेक्ट फील्ड में माय फर्स्ट इमेल फ्रॉम थंडरबर्ड टाइप करें
सेंड पर क्लिक करें
आपका ईमेल भेजा जा चुका है
इसे जाँच लें
हमें STUSERTWOyahooin अकाऊंट खोलना होगा और इनबॉक्स जाँचना है
तो याहू पर लॉगिन करें
याहू लॉगिन पेज में याहू आई डी स्टूसर्टवो टाइप करें
आपका पासवर्ड प्रविष्ट करें
इनबॉक्स पर क्लिक करें
इनबॉक्स जीमेल अकाऊंट से प्राप्त मेल दर्शाता है
इसे खोलने के लिए मेल पर क्लिक करें
आप मेल का उत्तर देने के लिए रिप्लाई बटन का उपयोग कर सकते हैं लेकिन यहाँ एक नया मेल भेजते हैं
कंपोज पर क्लिक करें
टो फील्ड में स्टूसरोन gmailcom पता प्रविष्ट करें
सब्जेक्ट फील्ड में Congrats
प्रविष्ट करें
मेल में ग्लैड यू गोट आ न्यू अकाउंट टाइप करें
सेंड बटन पर क्लिक करें और याहू से लॉग आऊट हो जाएँ
यह ब्राऊज़र बंद करें
अब थंडरबर्ड को जाँचें
गेट मैल पर क्लिक करें और गेट अल्ल न्यू मेसेजेज पर क्लिक करें
बायें पैनल से अपने जीमेल अकाऊंट आईडी के नीचे इनबॉक्स पर क्लिक करें
याहू अकाऊंट से भेजा गया नया मैसेज इनबॉक्स में प्रदर्शित होता है
मेल की विषय-साम्रगियाँ नीचे पैनल में प्रदर्शित होती हैं
आप इस मेल का जवाब रिप्लाई बटन का उपयोग करके दे सकते हैं
हमने थंडरबर्ड का उपयोग करके ईमेल मैसेज सफलतापूर्वक भेजे प्राप्त किए और देखे हैं
थंडरबर्ड से लॉग आऊट करने के लिए मुख्य मेन्यू से फाइल और क्विट पर क्लिक करें
आप मोज़िला थंडरबर्ड से बाहर आओगे
इसी के साथ हम थंडरबर्ड के इस ट्यूटोरियल के अंत में आ गये हैं
इस ट्यूटोरियल में हमने मोज़िला थंडरबर्ड के बारे में तथा थंडरबर्ड डाउनलोड संस्थापित और लॉन्च करना सीखा
हमने यह भी सीखा कि कैसे नया ईमेल अकाऊंट कन्फिगर करें मैसेज लिखें और मेल भेजे मैसेज प्राप्त करें और पढ़ें
थंडरबर्ड से लॉग आउट करें
यहाँ आप के लिए एक नियत कार्य है
मोज़िला थंडरबर्ड एप्लिकेशन डाऊनलोड करें
इसे संस्थापित और लॉन्च करें
थंडरबर्ड में एक ईमेल अकाउंट कन्फिगर करें
यह अकाऊंट का उपयोग करके मेल्स भेजें और प्राप्त करें निरीक्षण करें क्या होता है
निम्न लिंक पर उपलब्ध विडियो देखें
यह स्पोकन ट्यटोरियल प्रोजेक्ट को सारांशित करता है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
आईआईटी मुंबई की ओर से मैं रवि कुमार अब आपसे विदा लेता हूँहमसे जुड़ने के लिए धन्यवाद